ऊपर से नीचे की तरफ नेट लटक रही है। वहां पे ईंटे रखी हुई हैं। नीचे वहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है। बाजू में एक पेड़ लगा हुआ है।

और नीचे भी उस पे सीढ़ियों पे रेलिंग लगी हुई है स्टील वाली। सामने कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं कुछ लोग खड़े हुए छोटे-छोटे कुछ पौधे लगे हुए हैं।

पीछे मकान दिखाई दे रहा है। मकान के बाजू में बोहोत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे --

नीचे पक्का फर्श डला हुआ है जिसपे टाइल्स लगी हुई हैं काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं हर दुकान में काफी सारी लाइटिंग लगी हुई है।

पीछे काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे बहोत बड़ी - बड़ी बिल्डिंग लगी हुई हैं इस ग्राउंड के चारों ओर रेलिंग लगी हुई है लोहे के पाइप लगे हुए हैं।